नमस्कार दोस्तों पाइथन का इस्तेमाल करके स्टैटिस्टिक पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप निम्न करने में सक्षम होंगे पाइथन में सांख्यिकीय ऑपरेशंस करने में संख्याओं के समूह को जोड़ने में उनका औसत माध्यिका और मानक विचलन निकालने में इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि आप फाइल्स से डेटा लोड करने पर गेटिंग स्टार्टेड विथ लिस्ट्स और एक्सेसिंग पीसेस ओएफ अरेज पर ट्यूटोरियल को पूरा कर लें
अब टर्मिनल पर टाइप करें इपिथॉन स्पेस हाइफेन पाइलैब
इस ट्यूटोरियल के लिए हम डेटा फाइल इस्तेमाल करेंगे जो स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश एसएसएलसी2 डॉट टीएक्सटी पाथ पर है
यह छात्रों के रिकॉर्ड और उनके स्टेट माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन को सम्मिलित करता है
इसमें रिकॉर्ड के 180000 लाईन्स हैं
हम इसे रीड करने जा रहे हैं और इस डेटा को संसाधित करने जा रहे हैं
हम फाइल का कंटेंट उस पर डबल क्लिक करके देख सकते हैं
यह खुलने में कुछ समय ले सकता है क्योंकि यह काफी बड़ी फाइल है
कृपया डेटा को न सम्पादित करें क्योंकि इसकी एक विशिष्ट संरचना है
फाइल के कंटेंट को जाँचने के लिए हम कैट कमांड इस्तेमाल करते हैं
अतः टाइप करें कैट स्पेस स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश एसएसएलसी2 डॉट टीएक्सटी और एंटर दबाएँ
फाइल की प्रत्येक लाइन 11 फील्ड जो सेमी कोलंस से विभाजित हैं उनका समूह है
इस फाइल से एक नमूना लाइन देखें
आ सेमीकोलों 015163 सेमीकोलों जोसेफ राज एस सेमीकोलों 083 सेमीकोलों 042 सेमीकोलों 47 सेमीकोलों 00 सेमीकोलों 72 सेमीकोलों 244 और एक रो में तीन सेमी कोलंस

निम्नकिसी भी दी हुई लाइन के फील्ड्स हैं
रीजियन कोड व्हिच इस आ रोल नंबर 015163 नामे जोसेफ राज एस मार्क्स ओएफ 5 subjects इंग्लिश 083 हिंदी 042 मैथ्स 47 साइंस 35 Social साइंस 72 एंड टोटल मार्क्स 244 इस डेटा को अरै की तरह लोड करें और फिर इसपर विभिन्न फंक्शन्स रन करें
अरै की तरह डेटा पाने के लिए हम लोडटीएक्सटी कमांड इस्तेमाल करते हैं
अतः टर्मिनल पर टाइप करें ल इस इक्वल टो लोडटीएक्सटी विथिन ब्रैकेट्स सिंगल क्वोट्स स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश एसएसएलसी2 डॉट टीएक्सटी कॉमा यूजकॉल्स इस इक्वल टो विथिन ब्रैकेट्स 34567 कॉमा डेलीमीटर इस इक्वल टो विथिन सिंगल क्वोट्स semicolon और एंटर दबाएँ
हमें हमारा आउटपुट अराय डॉट लोडटीएक्सटी फंक्शन के रूप में मिलता है
अब हमें एक एरर मिली
हमें कोष्ठकों से पहले लोडटीएक्सटी टाइप करना होगा
डिलीमीटर कैरेक्टर का प्रकार निर्दिष्ट करता है जो यूजकॉल्स द्वारा विभक्त डेटा के फील्ड्स में उपयोग होने वाले कॉलम्स को निर्दिष्ट करता है
अतः कोष्ठकों के अंदर 34567 कॉलम्स को लोड करता है
कॉमा जोड़ा गया है क्योंकि यूजकॉल्स एक क्रम है
जैसा कि हम देख सकते हैं कि ल एक अरै है
हम इस अरै की बनावट टर्मिनल का इस्तेमाल करके पा सकते हैं हम टाइप कर सकते हैं ल डॉट शेप और एंटर दबाएँ
हमें एक ट्यूपल मिलता है जो रोस और कॉलम्स क्रमशः की संख्याएँ बताता है
चलिए इनपर संख्यिकीय ऑपरेशंस लागू करना शुरू करते हैं
हम सबसे बुनियादी से शुरू करते हैं समिंग
आप पहले विद्यार्थी के लिए कैसे सभी विषयों के अंकों का जोड़ निकालेंगे
जैसा कि हम अरैज़ के पीसेस को एक्सेस करने के अपने ज्ञान से जानते हैं पहले रो को एक्सेस करने के लिए हम टर्मिनल में टाइप करेंगे ल स्क्वेयर ब्रैकेट्स 0 कॉमा कोलोन
अब इसे जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं टोटल मार्क्स इस इक्वल टो सुम विथिन ब्रैकेट्स ल विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट्स 0 कॉमा कोलोन और एंटर दबाएँ
फिर टोटल मार्क्स
फिर से एंटर दबाएँ
अब औसत पाने के लिए हम टोटल मार्क्स को लम्बाई से भाग दे सकते हैं
अतः टाइप करें टोटल मार्क्स स्लैश लेन विथिन ब्रैकेट्स ल इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स 0 कॉमा कोलोन
या सरलता से फंक्शन मीन इस्तेमाल करें
इसके लिए टाइप करें मीन विथिन ब्रैकेट्स ल और स्क्वेयर ब्रैकेट्स में 0 कॉमा कोलोन और एंटर दबाएँ
किन्तु हमारे पास बहुत बड़ा डेटा समूह है और एक एक करके प्रत्येक विद्यार्थी का औसत निकालना नामुमकिन है
क्या काम को कम करने का कोई तरीका है
इसके लिए हम मीन के प्रलेखन को देखेंगे
अतः इसके लिए टर्मिनल में टाइप करें मीन क्वेस्शन मार्क जैसा कि हम जानते हैं ल एक टू डायमेंशनल अरै है
हम अरै के प्रत्येक अक्ष के लिए औसत निकाल सकते हैं
रोस का अक्ष संख्या 0 से और कॉलम्स 1 से निर्दिष्ट होता है
अतः सभी कॉलम्स की औसत निकलने के लिए हम अक्ष के लिए अतिरिक्त पैरामीटर 1 पास करेंगे
अतः टाइप करें मीन विथिन ब्रैकेट्स ल कॉमा 1 और एंटर दबाएँ
यहाँ ल एक टू डायमेंशनल अरै है
उसी प्रकार से प्रत्येक विषय के लिए सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों को मीन विथिन ब्रैकेट्स ल कॉमा 0 इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं
अगला सभी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी अंकों की माध्यिका निकालते हैं
ल स्कवैर ब्रेकेट्स कोलोन कॉमा ज़ेरो का इस्तेमाल करके और एंटर दबाकर हम सभी विद्यार्थियों के अंग्रेजी अंकों को एक्सेस कर सकते हैं
माध्यिका पाने के लिए हम सरलता से फंक्शन मीडियन इस्तेमाल करेंगे
अतः टाइप करें मीडियन विथिन ब्रैकेट्स ल स्क्वेयर ब्रैकेट्स कोलोन कॉमा 0 सभी विषयों के लिए हम यही सिन्टैक्स मीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और मीडियन इस्तेमाल करके सभी रोस के लिए माध्यिका निकाल सकते हैं
अतः टाइप करें मीडियन इन ब्रैकेट्स ल कॉमा 0 और एंटर दबाएँ
उसी प्रकार अंग्रेजी के लिए मानक विचलन निकालने के लिए हम फंक्शन एसटीडी इस्तेमाल करेंगे
अतः टाइप करें एसटीडी इन ब्रैकेट्स ल एंड इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स कोलोन कॉमा 0 और एंटर दबाएँ
और सभी रोस के लिए हम एसटीडी विथिन ब्रैकेट्स ल कॉमा 0 करते हैं
यहाँ पर वीडियो रोकें निम्न अभ्यास करें और वीडियो पुनः चलायें
पाथ स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश फुटबॉल डॉट टीएक्सटी पर दी हुई फाइल फुटबॉल डॉट टीएक्सटी में पहला कॉलम प्लेयर नामे दूसरा गोल्स एटी होम और तीसरा गोल्स अवय का है
प्रत्येक खिलाड़ी के लिए कुल गोल्स निकालें
2होम और अवे गोल्स का औसत निकालें
3होम और अवे गोल्स का मानक विचलन निकालें
यह अपेक्षित डेटा है
इसके लिए फुटबॉल डॉट टीएक्सटी फाइल खोलें
हल आपकी स्क्रीन पर है
इसी के साथ हम ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा 1
पाइथन में सामान्य स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस जोड़ औसत माध्यिका और मानक विचलन करना
2वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए टेक्स्ट लोडिंग और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन को मिलाना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
एक टू डायमेंशनल लिस्ट दी है two dimensional list इस इक्वल टो स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर 35821 अन्य स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर 43621 हम प्रत्येक रो का औसत कैसे निकालेंगे
2दी हुई लिस्ट की माध्यिका कैसे निकालेंगे
student marks इस इक्वल टो स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर 747856879182 और तीसरा सवाल है कि मानिए आपके पास 6 कॉलम्स के साथ एक फाइल है किन्तु हम टेक्स्ट केवल कॉलम्स 2345 में करना चाहते हैं
हम यह निर्दिष्ट कैसे करेंगे
और उत्तर हैं 1प्रत्येक रो का औसत पाने के लिए हम बस फंक्शन मीन के दूसरे पैरामीटर में 1 पास करते हैं
अतः हमें टाइप करना होगा मीन विथिन ब्रैकेट्स two dimensional list कॉमा 1 2
लिस्ट की माध्यिका निकालने के लिए हम फंक्शन मीडियन इस्तेमाल करते हैं
मीडियन विथिन ब्रैकेट्स student marks टाइप करके
और अंतिम है एक फाइल के विशिष्ट कॉलम्स को निर्दिष्ट करने के लिए हम पैरामीटर यूजकॉल्स इस इक्वल टो 2345 इस्तेमाल करते हैं